राजकीय आद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान लिखा हुआ है।

और सफ़ेद कलर की एक कार भी खड़ी हुई है जिसके उपर सफ़ेद बोर्ड पर लाल अक्षरों से मलिक नर्सिंग होम लिखा हुआ है।

यह एक हिरन की तस्वीर है जिसकी पूंछ नही दिख रही है।

यह तस्वीर एक बहोत बड़े दुकान की है जिसके सामने का गेट खुला हुआ है। हल्की सी रौशनी आ रही है। नीले कलर के बोर्ड पर कुछ लिखा है।

जब की पीछे की और दो अन्य व्यक्ति दायी ओर एक अन्य व्यक्ति दिखाई दे रहा --

जिसके हाथ में नीले कलर के डब्बे में सफ़ेद कलर का कुछ पाऊडर है। दूसरे हाथ से वो झाड़ू के ऊपर कुछ डाल रहा है।

दोनों के बाये नट बोहोत बुरी तरीके से ख़राब हैं एक का टायर पूरी तरीके से ख़राब --

हलके सफ़ेद रंग का एक शर्ट पहना है और ब्लैक पैन्ट जब की तीसरे व्यक्ति ने हरे कलर का शर्ट पहना है और चॉकलेटी कलर का पैंट पहना हुआ --

एक हरके हल्के हरे कलर में कार खड़ी दिखाई दे रही है और सफ़ेद कलर की अन्य एक कार भी दिख रही है। साथ में दो बड़े-बड़े पेड़ भी हैं।